यूज़र लॉगिन और सेशन्स पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल php के कुछ पहलुओं को बताता है जो ध्यान केंद्रित करेंगे कि एक html फॉर्म को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यूजरनेम और पासवर्ड के लिए चेक कैसे कर सकते हैं
एंटर की हुई वेल्यू डेटाबेस से चेक होगी
मैं आपको बताऊँगा कि अपने यूजरनेम और पासवर्ड के साथ डेटाबेस कैसे सेटअप करें डेटबेस से कैसे जुड़ें और लॉगआउट फंक्शन की प्रक्रिया कैसे करें
क्योंकि हम सेशन्स का उपयोग कर रहे हैं उपयोगकर्ता यूजर लॉगइन ही रहेगा जब तक कि वे लॉगआउट बटन प्रेस नहीं करते
शुरूआत में मैं एक html फॉर्म बनाऊँगा
मैं आपको कुछ mysql फीचर्स के बारे में बताऊँगा जिनको हम सेटअप करेंगे
अपने html फॉर्म में हम login dot php नामक पेज पर कार्य कर रहे हैं
इसको सरल करने के लिए हम अलगअलग पेज रखेंगे
हमारी पद्धति post होने जा रही है
चलिए अपनी फॉर्म यहाँ समाप्त करते हैं
मैं अपना इनपुट टाइप बनाना शुरू करूँगा जो text होगा और नेम username होगा
एक लाइन ब्रेक यहाँ
इस लाइन को कॉपीपेस्ट करें और text को password में बदलें
और password कहते हैं हम कौनसे ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं उसके अनुसार ही यह स्टार या सर्कल्स के रूप में दिखाई देगा
और अन्ततः हम submit बटन बनायेंगे और इसकी वेल्यू log in होगी
इसकी कोशिश करते हैं रिफ्रेश करें और हमारे पास पेज यहाँ है
index dot php यूजरनेम और पासवर्ड के साथ
मैं लॉगिन करूँगा और यह पेज पर जाता है जो कि मौजूद नहीं है
अब चलिए इसको कुछ अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाते हैं और लेबल्स यहाँ टाइप करते हैं
रिफ्रेश करें और हम यहाँ हैं
अब अपनी login dot php फाइल बनाते हैं
पहले मैं php my admin ओपन करूँगा
यदि आप xampp का उपयोग कर रहे हैं तो php my admin के लिए लोकल हॉस्ट का उपयोग करके यह डिफॉल्ट रूप से संस्थापित होगा
यदि यह अभी भी संस्थापित नहीं हुआ है तो इसके लिए मैं आपको गूगल पर जाकर लोकल हॉस्ट डाइरेक्टरी पर कॉपी संस्थापित करके इसका उपयोग करने की सलाह दूँगा
अब हम नया डेटाबेस बनायेंगे
अतः यहाँ php login नामक नया डेटाबेस बनायें और create को क्लिक करें
हम देख सकते हैं यह यहाँ दिखाई दे रहा है और हम अब टेबल्स बना सकते हैं
यदि आप sql से परिचित नहीं हैं तो मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ
बुनियादी संरचना है डेटाबेस जो टेबल्स को संचित करता है और टेबल्स रोव्स को संचित करते हैं और रोव्स वेल्यू को संचित करते हैं
users नाम दें और ok पर क्लिक करें
एक एरर the number of fields!
जब मैं नया डेटाबेस बनाता हूँ मैं नोटपेडnotepad या कॉन्टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ और सभी फील्ड्स को लिखता हूँ जिनका मैं उपयोग करूँगा
मैं शुरूआत के लिए id फिर user name और अंत में password का उपयोग करूँगा फिलहाल हमें यह सब चाहिए
आपके प्रोग्राम की निर्भरता अनुसार हम first name date of birth आदि भी जोड़ सकते हैं
लेकिन अभी के लिए हम इन 3 फील्ड्स का उपयोग इसे 3 फील्ड्स का टोटल बना रहे हैं
चलिए यहाँ वापस जाते हैं अतः 3 फील्ड्स और वह पहले यह बनायेगा
अब हम फील्ड नेम्स में टाइप करके आगे बढ़ते हैं
हम id टाइप करते हैं और हम इसे एक पूर्णांक integer बनायेंगे
यह प्राथमिक उपाय है और हम इसे auto_increment बनाना चाहते हैं
अब प्रत्येक समय नये रिकार्ड जब बनती है id वेल्यूस एक से बढ़त होगी
अतः उदाहरणस्वरूप पहला यूजर जो रजिस्टर करेगा उसकी id एक होगी दूसरा यूजर जो रजिस्टर करेगा उसकी id दो होगी इसी क्रम से आगे
अच्छा आगे यूजरनेम होगा और आखिरी पासवर्ड होगा
आगे हम उन्हें varchars के रूप में सेट करेंगे और मैं इसे 25 अक्षरों में सेट करूँगा और पासवर्ड को भी 25 अक्षरों में
यहाँ और कुछ नहीं है जिसे हमें इनके लिए सेट करने की आवश्यकता है
नीचे स्क्रोल करें और save पर क्लिक करें
अच्छा तो एक बार मैं यहाँ सेव कर देता हूँ तो हम नीचे आ सकते हैं और इसे यहाँ देख सकते हैं
और आप उनमें वेल्यू प्रविष्ट कर सकते हैं
हम इसे करेंगे क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं
यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनायें इस पर मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स बनायें हैं हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं
id की वेल्यू स्ववृद्धित autoincremented होगी अतः हम कुछ भी नहीं डालते
यह एक होगा
यूजरनेम में मैं alex लिखूँगा
मेरा पासवर्ड abc होगा हालाँकि मैं आपको अच्छे पासवर्ड की सलाह दूँगा
अच्छा तो यूजरनेम alex है और पासवर्ड abc है याद रखने के लिए आसान यह संग्रहीत किया गया है
ब्राउज करने के लिए browse tab पर क्लिक करें
नीचे स्क्रोल करें हमारे पास alex और abc के रूप में यूजरनेम और पासवर्ड है और id पहले से ही 1 सेट की हुई है
अब हम login dot php पेज बनायेंगे
इसे तुरंत सेव करें login dot php
चलिए देखते हैं कि अपने php टैग्स कैसे बनायें
अब मैं कुछ post वेरिएबल्स पर विचार करूँगा
index dot php में हमने post के रूप में method का उपयोग किया
हम यूजरनेम dollar sign underscore post सेट करेंगे और वेरिएबल को रिनेम करेंगे जो username है
यह यहाँ मिला और पासवर्ड post वेल्यू के समान होगा और और वह password होगा
सबसे पहले हम प्रविष्ट किये हुए यूजरनेम और पासवर्ड दोनों की जाँच करेंगे
हम फॉर्म को प्रमाणित करना शुरू नहीं करेंगे यह करना अनावश्यक है क्योंकि यूजर ने इन दोनों फील्ड्स को प्रविष्ट कर दिया है
अब मैं मेरा if स्टेटमेंट टाइप करूँगा
यह एक बड़ा ब्लॉक होगा क्योंकि सभी कोड जो मुझे चेक के बाद चाहिए यह यहाँ पर चले जायेंगे
अतः मैं यहाँ if username लिखूँगा जिसका अर्थ है if username में यदि वेल्यू है यह सही होगा और मैं password लिखूँगा
अतः इसको ट्रूtrue करने के लिए और यहाँ कोड के इस ब्लॉक को निष्पादित करने के लिए इस username और password की आवश्यकता है
हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें अपने डेटाबेस से जुड़ने की आवश्यकता है
यह करने के लिए हम connect equal to mysql_connect नामक वेरिएबल बनाते हैं
और इसके अंदर पहला पैरामीटर host होगा जो कि मेरे लिए localhost है
दूसरा होगा username और मैं root का उपयोग करूँगा
तीसरा है password जो मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है हम उस में चेक करेंगे
इसके बाद हम or die लिख सकते हैं और एक एरर मेसेज देता है
अतः उदाहरणस्वरूप हम couldnt connect लिख सकते हैं
मुझे मेरे पासवर्ड के बारे में यकीन नहीं है मेरे ख्याल से यह कुछ और है
हम कुछ कोशिश करेंगे तो यह कहेगा couldnt connect
अब हमें अपने टेबल चुनने की आवश्यकता है माफ कीजिए अपना डेटाबेस
हम mysql select db लिखेंगे जो अन्य builtin function है जब आपके पास php मॉड्यूल संस्थापित हो जाता है
यह xampp में भी आता है
यहाँ मैं दोहरे उद्धरण डालूँगा और phplogin लिखूँगा
अतः मान लीजिए कि सबकुछ ठीक है मैं अपना एरर मेसेज couldnt find db यहाँ जोड़ सकता हूँ अच्छा
पेज रिफ्रेश करें login पर क्लिक करें कुछ नहीं हुआ
चलिए अपनी if स्टेटमेंट एडिट करते हैं और else लिखते हैं एको या बेस्ट फंक्शन die है
यहाँ यह इस प्वॉइंट के बाद से कुछ भी निष्पादित करना बंद कर देगा
और यह आपका पसंदीदा मेसेज भी पास करेगा
अतः यहाँ मैं लिखूँगा please enter a user name and a password
इसे रिफ्रेश करें डेटा रिसेंड करें और हमें यह एरर मेसेज मिलता है
आगे मैं alex और 123 टाइप करूँगा माफ कीजिए abc और login पर क्लिक करूँगा
कोई भी एरर मेसेज नहीं है जिसका मतलब है हम डेटाबेस से जुड़ चुके हैं
यह इस भाग का अंत है अगले में मैं बताऊँगा कि अपने डेटाबेस से कैसे जुड़ें और यूजरनेम और पासवर्ड के लिए चेक कैसे करें